गाड़ी में ऑटो में बाइक वगैरा में पेट्रोल भराया जाता है डीज़ल भराया जाता है कार वगैरा में।

लकड़ी से इसलिए स्पोर्ट किया जाता हैं ताकि ये सुव्यवस्थित तरीके से बन सके।

जैसा की आप देख सकते हैं की यह एक आई.टी.आई. कार्यालय है जो की काफी बड़ा है।

उसके इधर साइड ये बाउंड्री है और उधर साइड में ये पेड़-पोधे भी लगे हुए हैं बड़े-बड़े --

यहाँ पे शॉप भी है और यहाँ पे ऑटो वैगरा भी खड़े हुए हैं काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे पीछे साइड से --

और ये भुट्टे बारिश के मौसम में बहोत ही अच्छे लगते है।

जेसा की आप देख सकते हैं की सामने यह एक किला जेसा दिखाई दे रहा हे जो की काफी पुराना हो चूका है।